यहां मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहे--

एक हेल्थ केयर दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में मुझे टेबल दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ मॉनिटर दिखाई दे रहे हैं।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

वे मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे है।